जिसमें सब्जी वगैरह उगाया जाता है मकई का बाल भी।

पानी का फुव्वारा निकाल रहा है और एक बहुत सारा तार लंबा है जिसमें अह और कुछ पहाड़ भी दिख रही हैं पहाड़ सुंदर है।

खेत हरा भरा है और उसमें पानी भी है और उधर बहुत सारे वृक्ष भी दिख रहे हैं।

गमला में कुछ रोपा हुआ है एक स्प्राइट का बोतल रखा हुआ है।

बहोत सारा आदमी है और एक बहोत सारा गोल जैसा बना हुआ है फूल चारों तरफ से है।

एक आदमी फोटो खिंचवा रहा है और लाल कलर का बैलून है।

पीला कलर का टांगा हुआ है रेड कलर का टांगा हुआ है और एक आदमी बैठा हुआ है ब्लू कलर का शर्ट पहना हैं।

पत्थर भी हैं और बहुत सारे आदमी हैं।

एक सड़क है और दोनों तरफ पुल है।

और खूब सुंदर लाइट लगी हुई है एक आदमी किसी से बात कर रहा है।

एक सुंदर सा कॉलेज है।

पहाड़ पे टूटा हुआ इधर उधर गिरा हुआ है।